आसमान में बादल नहीं दिख रहे हैं आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है यहां पर काफ़ी हरे भरे पेड़--

इसके ऊपर गुरु नानक पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है जूनियर विंग सेक्टर सैंतीस भी लिखा हुआ है।

इस चित्र में एक नहर नजर आ रही है। वहीं एक नहर के अंदर की किश्ती भी नजर आ रही है।

यीशु मसीह का नजर आ रहा है यहां पर सामने यीशु मसीह की एक पुतले की तस्वीर नजर आ रही है।

वहीं ट्रक के साथ एक स्टील की बाल्टी भी नजर आ रही है उसके साथ में एक पाइप भी लगी हुई है।

इस चित्र में लकड़ी से कारीगर किए हुए कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक पार्क नजर आ रहा है।

सोनपुर मेला दो हजार उन्नीस लिखा हुआ है यहां पर काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं वही यहां पर राइट साइड में--

इसके अलावा यहां पर एक काले रंग का बैग भी रखा हुआ नजर आ रहा है ऊपर दो--

इस चित्र में काफी सारी कुर्सियां नजर आ रही हैं।

वहीं एक आदमी वहां पर बैठा हुआ नजर आ रहा है।

इसके ऊपर एम_आई का साइन लगा हुआ है।

इस चित्र में काफी हरे भरे घास नजर आ रहे हैं।

पौधों के ऊपर सफेद रंग के कुछ--